इस तस्वीर में पंखा भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में हम बहोत से पौधे देख सकते हैं।

बहुत से पेड़ पौधे भी देख सकते हैं।

दिए गए छवि में हम एक सड़क देख सकते हैं।

इस छवि में हमें नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

दिखाए हुए छवि में हम एक धार्मिक स्थल देख सकते हैं।

इस छवि में हमें बहोत से पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं।

इस छवि में हमें बहोत सी गाड़ी भी पार्क हुए दिखाई पड़ते हैं।

इस छवी में हमें पट्रिया भी दिखाई दे रही है।

इस छवि में हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में हमें बहोत से पेर पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

इस छवि में हम बहुत से पेड़ पौधे देख सकते हैं।

इस तस्वीर में पीछे सूरज भी दिखाई दे रहा है।

दिए गए चित्र में हम एक ए_टी_एम मशीन देख सकते हैं ।

इस छवि में खिड़की भी दिखाई दे रही है।

इस छवि में हमें स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस छवि में हमें बहुत से वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में हमें एक एयर कंडीशनर भी दिखाई दे रहा है।

इस छवि में हमें बहुत से पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में हम बहुत से मकान देख सकते है।

वी में हम बाहर देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हम बहुत सारी लाइटें देख सकते हैं।

इस छवि में हमें खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर में एक बहुत सुंदर इमारत दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सी ट्यूब लाइट भी दिखाई दे रही है।

दिए गए छवि में हमने बहुत सी मिठाई शीशे के कंटेनर के अंदर दिखाइ दे रही है।

दिए गए छवि में हमें बहोत सी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इस छवि में बहुत से स्पीकर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में बहुत से जगहों पर पॉपकॉर्न भी रखा हुआ है।